साथ ही में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां मुझे कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

जहां पर लोग बाग पनीर को एक मशीन में से निकाल रहे हैं।

यहां पर ये एकला नजर आ रहा है।

यहां पर एक लड़का सिम बेंच रहा है।

यहां पर मुझे कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह हमें एक आरती बुक सेंटर दिखाई देता है।

एक लड़का झूला भी झूल रहा है।

हमें एक ऑटो चलता हुआ दिख रहा है।